यहाँ पर बोहोत बड़ी बिल्डिंग बनी हुई है। बिल्डिंग काफी बड़ी है और देखने पर लग रहा ये काफी ह तीन चार मंजिल बनाई गई है। सामने की ओर में गार्डन दिया गया है।

और यहाँ पे गुलदस्ते भी रखे हुए है कुछ लाइट्स भी हैं।